इस फोटो में हम देख रहे हैं एक लंबी सड़क है। सड़क पर बहुत सारे लोग खड़े हैं। इस पर गाड़ियाँ भी नजर आ रही हैं। सड़क के उस तरफ एक --

दृश्य में एक पुराना हवेली दिखाई दे रहा है। इसमें नीचे तीन द्वार दिखाई दे रहे हैं। सामने एक हरा मैदान है।

इसके सामने एक काले रंग का बड़ा-सा मेज है। इस पे दो तौलिये दिखाई दे रहे हैं। एक तौलिया आदमी के हाथ में है। दो आदमी और नजर आ रहे हैं।

बहुत सारे फल व्यवस्थित ढंग से रखे गए हैं। इसके ऊपर पत्तियों की शाखाएं लटक रही हैं।